इसके अगल बगल सूखे मैदान आगे की ओर हरे भरे मैदान भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक तरफ पानी का नल भी लगा हुआ है जिसके ऊपर हिंदी भाषा में शुद्ध पेयजल लिखा गया है।

इस भाग में एक तरफ पर्दा दिखाया गया है और उसके ऊपर बहुत सारे एक तरह के डब्बे सजा कर रखे गए हैं।

एक बड़ी सी शीशे की अलमारी है इसके अंदर बहुत सारे छोटे बड़े डब्बे सजा कर अच्छे ढंग से रखे गए हैं।

पूल में एक बड़ा खम्भा है और दो सीढ़ियां सरकने वाली लगाई गई हैं।

ये एक हरे रंग का पर्दा है और कई कुर्सियां चारपाई और मेज भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके आगे बोर्ड पे शुभकामना लिखा गया है और पीछे बहुत सारी चीजे लटक रही है।

यहां कुछ छोटे बड़े पत्थर नुमा चट्टान नीचे भी हैं।

खेत के बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है जिसे मिट्टी का मेढ़ भी कहते है और --

इस दृश्य में किसी पुराने भवन के अंदर के भाग को दिखाया गया है।

और उसके ऊपर आगे पीछे कई बड़ी बड़ी खिड़कियों जैसा ताख दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें बड़े से दुकान के अंदर के भाग को देख रहे हैं।

इस दृश्य में हम देख रहे हैं एक सड़क पर एक हरे और पीले रंग का टेंपो दिखाई दे रहा है।

टेम्पू के आगे दो तीन व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

क्योंकि ऊपर हरे और हरे लाल रंग के रंगों से सजावट की गई है।

इसके निचले भाग में दुकान खोला गया है और ऊपर खिड़कियां दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

मकान दो मंजिलों का है और इसके ऊपर एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

इस के ऊपर नीले रंग का टीना रखा हुआ है और नीचे लाल रंग का दीवार है।

इसमें दो बतख भी नजर आ रहे हैं और उनके प्रतिबिंब पानी में साफ नजर आ रहे हैं।

खिड़की के दूसरी तरफ बहोत सारे छोटे बड़े सफेद और स्लेटी रंग के मकान नजर आ रहे हैं।

तालाब में एक सफेद काले रंग का बंगला है और दो बत्तख भी तैरते हुए नजर आ रहे हैं।

कुछ छोटे छोटे पत्ते और काईयां भी नजर आ रही है।

नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े हरे हरे वृक्ष और कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है और हरे भरे बड़े बड़े वृक्ष भी हैं और मैदान भी।

बगल की दीवारों पर भी हिंदी भाषा की लिखावट नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमे बड़ा सा मकान देख रहे हैं मकान में तीन रोशनदान दो खिड़कियां और एक दरवाजा नजर आ रहे हैं।

आगे एक आदमी लाल और नीले रंग का वस्त्र पहने हुए खड़ा है।

इसके ऊपर अंग्रेजी भाषा में बंदीपुर टाइगर रिजर्व लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बगल में सिसो की अलमारियां बनी है ऊपर बिजली के तार लटक रहे हैं और लोहे की जालियां भी लगी हुई है।

इनमें बहुत सारे कपड़े और बल्ब दिखाई दें रहे है।